बात करे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लड़की को जिसने एक पा हरे रंग का एक पाइप पकड़ा हुआ है और उसमें सब बहुत तेज पानी का प्रेशर निकल रहा है।

और यहाँ पे कुछ ट्रॉली जैसी बनी हुई है जिसके अंदर हम देख पा रहे है की ऊपर से एक पाइप में से कोई आग का गोला या फिर चिंगारी जैसा कुछ निकलता हुआ एक ट्रॉली मे जमा होता हुआ हमें नज़र आ रहा है और एक आदमी दूर खड़ा है।

हम बात करे तो यहाँ पे हम देख सकते है बहुत सारे लोग स्टेज के इस पार और स्टेज के उस पार मतलब के बाउंड्री के उस पार खड़े--

और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो हमारी तरफ जो लोग खड़े है वो लोग सामने वाले लोग की वीडियो बनाते हुए नज़र आ रहे है क्युकी वहाँ पर एक ही तरीके का कुछ परफॉर्म करते हुए कुछ एक्टिविटी करते हुए दिख पा रहे है।

करे तो यहाँ पर हमें एक रास्ता नज़र आ रहा है किसी जंगल के अंदर का और साइडो में बहुत सारे पौधे उगे पड़े है झाड़िया सी उगी हुई है।

और नीचे की तरफ भी हम कुछ कछुए अ आर्टिफिशियल से और घंटियां और शेर वगैरह और जानवर वगैरह बने हुए हैं इन तीन चीजों से--

के आर्टिफीसियल इंडिया गेट के पास यहाँ पे लाइटिंग जलती हुवे हमें नज़र आ रही है साइकिल पे कुछ लोग जाते हुए नज़र आ रहे हैं।

यहाँ पे तो हमें एक गेट नजर आ रहा है गेट का डिज़ाइन काफी प्यारा है उसका जो ऊपर वाला उस उसका जो ऊपर वाला पोरशन है वो बहुत ही स्टाइलिश सा बनाया हुआ है बिल्कुल सर्कुलर टाइप में और औवल शेप में--

तो हम यहां पर हम देख सकते हैं तीन मंजिला बनी हुई एक इमारत को जो की हमे उसकी अ दो फ्लोर की विंडोज हमें साफ और क्लियर तरीके से नजर अ रही है।

--और उसमें लगे हुए कुछ पाइपस भी हम देख पा रहे हैं और विंडोज़ में ग्लासेस लगे हुए तो वो भी हम देख सकते हैं और बिल्डिंग के बीच वाले हिस्से में हम देख पा रहे हैं कि छत पर एक कुछ डिज़ाइन बना रखा है बॉक्स जैसा--